ये एक बाजार दिखाई दे रहे हैं। जहां पर रास्ते के पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग का बड़ा बिल्डिंग है उसके नीचे वाला तीन तला बिल्डिंग नीचे वाला--

जो होता है ना वो है जहां से लिफ्ट होके सब लोग ऊपर जा सकते है।

बिल्डिंग बनने के लिए रोड में कुछ लौड़ी वैगैरा ट्रक वगैरा बाइक वगैरा जा रहा है।